यह एक मकान का दृश्य दिखाई दे रहा है इसमें एक गेट भी बना हुआ है।

पुरुष अपने सर पर दौरी उठाकर खड़ा है नीचे जमीन पर एक बाल्टी भी रखी हुई है।

यहां सीढ़ियां पे बनी हुई है।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

यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

छत के ऊपर पानी टंकी भी रखा हुआ है यहां कुछ खिड़कियां और गेट भी बने हुए हैं।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है यह काफी आकर्षक दृश्य लग रहा है।

यहां बहुत शांति महसूस हो रही है।

अंदर बहुत सारे रैक बने हुए हैं जिस पे सामान रखा गया है।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां एक कपड़े का शोरूम का दृश्य दिख रहा है यहां बड़े अक्षरों में प्रवीण स्क्वायर मान्यवर लिखा हुआ है।

सामने बहोत सारी कांच लगी हुई हैं।

यहां कुछ खिड़कियां और दरवाजे भी नजर आ रहे है जिसमें कांच लगी हुई है सामने कुछ कुर्सियां भी दिख रही है।

दिवाल में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है यहां एक पंखा भी लगा हुआ है।